पेड़ - पौधे भी है जोकि आपको दिख रहे है वहाँ पर देखिए वहाँ पर देखिए कुछ बना हुआ है जोकि झोपड़ी में जोकि आपको दिख रही हैं।